इसमें एक भारत माता का स्टे-स्टेचू बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइड में भी एक स्टेचू बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इमेज में एक बड़ा-सा प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा है जहाँ पर हरी-हरी घास दिखाई दे रही है यहां पर बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर एक बोट में दो व्यक्ति बैठे हुए नज़र आ रहे है और एक बोट में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे परिंदे उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं।

इमेज एक रोड की है जहाँ पर बहुत सारी कारे खड़ी हुई दिखाई दे रही है और कुछ कारे चलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर एक ट्रक भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर कुछ बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे है और कुछ छोटी छोटी घास भी यहाँ पर दिखाई दे रही है।